थाली में दिया फल खाने में स्वच्छ और मन को तरो-ताजा रखते है।

ये बहोत ही निरीक्षण कर रहे है और उसकी जाँच समूह व समूह--